य -य यहाँ ये बहुत सारी कुर्सी है एंड टेबल है और यहाँ बहुत सारे कुर्सी भी है और यहाँ प्लेट ग्लास भी है और ये बहुत सुंदर दिख रहा हैं ।

यहाँ एक बहुत सुंदर दिख रहा है और यह बहुत बड़ा दुकान है और ये ये बोर्ड भी लगा है और बहुत सारे गुब्बारे भी है जो कलर कलर कै है आस पास बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं और दो तीन बाइक भी दिख रहा है और यहाँ का दृश्य बहुत सुंदर है।

बहुत अच्छा दिख रहा है सामुदायिक स्वच्छता परिसर है और ये पुरुष महिला के लिए शौचालय है और दो गेट भी दिख रहे है और ये बहुत अच्छा दिख रहा है ताता पानी का है और यह बहुत सुंदर है और यह बहुत बड़ा गेट --

आस-पास गाडी भी दिख रहे हैं और एक कुर्सी टेबल भी है और यह बहुत सुंदर दिख रहा है।

यह एक दुकान है जो कि इसमें स-समान रखा है और यह बहुत सुंदर दिख रहा है और यह-यहाँ बोर्ड भी लगा है और इसके बगल में भी एक दुकान है जो बहुत सुंदर दिख रहा है और ये बहुत बढ़िया है।

और ये बहुत सुंदर दिख रहा है और एक बेड भी है जो बहुत सुंदर दिख रहा है बहुत बढ़िया दिख रहा--

यहाँ-यहाँ एक-यह एक बहुत बड़ा टेंट है जो बहुत सुंदर दिख रहा है और इसके आस-पास बहुत से लोग भी है जो दिख रहे है।